यहाँ पर कई गो लाइट लग रहा है झालर है यहाँ पे ।

यह तालाब है इसमें जंगल टाएप का है।

यहाँ पर बहोत ज्यादा छड़ लग रहा है केला लउक रहा है पीछे घर भी है।

एक हम्म्म नाव भी है और हरी-हरी पेड़-पौधा भी है।

यहाँ पर ये रूम भी है एके गो। ये हॉल मति है।